अउ बर्फ वाला भी मछली रखे हैं और बहुत अच्छा क्वालिटी का मछली ये बेचते हैं।

ये सूर्य नमस्कार में सारे प्रकार की एक्सरसाइज हो जाते हैं बॉडी के और ये अगर पाँच सात सेट मारते हैं तो आपको बाकी काम करने का उतना जरूरत नहीं है। ये हेल्दी एक्सरसाइज है।

सभी कार बना रहे हैं। कार में कुछ मशीन से ड्रिल कर रहें हैं और ये बहुत बढ़िया कार बना रहे हैं और ये कार बन जाएगी तो इसको चलाया जायेगा। ये पूरी रिपेयरिंग करने के लिए आई है और ये कार आगे से लग रहा है ठुकी हुई है।

इसमें है। दीदी लोग मछली बेच रही हैं। भैया लोग --

ये जो बॉडी सेंटर है। ये बहुत अच्छा है।

लोग आते हैं टहलते हैं।

और काफी लाइटिंग की भी व्यवस्था की गयी है। रात में भी लोग यहाँ आते हैं टहलते हैं।

ये एक पहाड़ है जिसमें छोटा-बड़ा सब पहाड़ है और ऊपर एक हरा घास का पेड़ भी है। पहाड़ बहुत ऊपर तक है और चट्टान बहुत इधर उधर है।

अब ठंडा ऊंढ़ा में किसी पे भी गिरेगा तो इनलोगों को नुक्सान नहीं करेगा और ये काफी अच्छा होता है।